एक मंदिर के अंदर का इमेज है नीचे काले रंग की टाइल्स लगी हुई है जिसपे सफ़ेद रंग की पट्टी की गयी है।

यहाँ पर एक तालाब जैसा कुछ देखा जा सकता है जिसके आगे पत्थरों की बाउंड्री की गयी है।

यह पर एक ब्लू कलर का आकाश साफ दिखा जा सकता है जिसपे सफ़ेद कलर के बादल देखे जा सकते है नीचे धरती देखि जा सकती है।

यहा पर नीचे धरती देखि जा सकती है जिस पर घासे उगी हुई है। ऊपर कुछ हरे-हरे पेड़ पौधे देखे जा सकते है। कुछ बाउंड्री जैसा किया गया है। एक व्यक्ति खड़ा देखा जा सकता है और जो झुका हुआ है।